इस चित्र में हमें एक बगिया दिखाई दे रही है।

सामने एक कांच लगा है।

काफी सारे लोगों की भीड़ जमा है।

इस चित्र में हमें रोज ब्यूटी पार्लर दिख रहा है।

काफी सारे आदमी बैठे हुए हैं।

यहाँ पर मछली दिख रही है।

कुछ दीवियाँ नजर आ रही है।

अलग अलग रंग है एक नीली पन्नी दिख रही हैं।

जो टायर में हवा भरने वाली है।

बादल नजर आ रहा है।

लाल शर्ट पहने हुए हैं।

कुछ लड़के खड़े हुए हैं।

इस चित्र में हमें एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

पेड़ की पत्तियाँ हरी हैं।

तेज धूप निकली है गाड़ियां खड़ी हुई है।

कैनरा बैंक दिखाई दे रहा है।

जो पूरा कांच का है।

इस क्षेत्र में हमें एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

एक एंबुलेंस खड़ी हुई है।

इस चित्र में एक महल दिखाई दे रहा है कुछ मेहराबे बनी हुई हैं।

दो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं।